और एक अंक अंकल हैं जो कि साइब साइड में खड़े हुए हैं। कुर्ता पहने हुए हैं वाइट कलर का। चश्मा लगाये हुए हैं। थोड़े बड़े से उनके बाल हैं।

ये एक ऑफिस का फोटो है | ये एक डेस्क का फोटो है डेस्क पर कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि ऑन है माउस रखा हुआ है | एक पेपर पेन है |

ये एक स्टेशनरी शॉप का फोटो है। यहाँ पे दो अंकल बैठे हुए हैं जोकि सेल्फी ले रहे हैं एक अंकल चश्मा लगाये हुए हैं।

शीशे पे रेड कलर का बॉर्डर बना हुआ है। रेड कलर से पेंट हुआ हुआ है वो और हर शीशे के ऊपर बलून्स लगे हुए हैं कलरफुल साइड में एक जग रखा हुआ है।

के ऊपर एक भईया बैठे हुए हैं जो के बाइक में कुछ झुक के देख रहे हैं।

एक स्कूल का फोटो है | बच्चे क्लास में बैठे हुए कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं।

स्कर्ट पहना हुआ है वाइट कलर का और टॉप पहनी है मल्टी कलर की और सामने एक लड़की है जो कि डांस कर रही है गाउन पहन के।